और ब अलमारी बनी हुई है अलमारी में बहोत --

सामने बहोत बड़ी मसीन दिख री है ग्रीन कलर की और ब्लैक कलर की।

छत्त दिख रही है लाइट दिख रही है।

कलर के और ग्रे कलर के दीवाल दिख रही है ग्रे कलर की--

के डिटेंडर्स और चैनल गेट लगा हुआ दिख रहा है

टेबिल रखी हुई दिख रही है अ गोभी रखी हुई दिख--

--तूगे भी दिख रहा है एक दिवार दिख रही है ग्रे कलर की--

एक टेबिल रखी हुई है ग्रे कलर का पानी का--

टब दिख रहा है कुर्सी रखी हुई दिख रही है।